और इसके आगे पुल भी दिख रहा है। पेड़ एकादो ठो दिख रहा है।

छोटा सा वो पोखरा भी दिख रहा है। इसके अगल बगल हराभरा दिख रहा है। बाइक भी लगी हुई है और पेड़ भी है।

और यहाँ पे शादी वगैरह होता है। फंक्शन --

काफी अच्छे अच्छे डिजाईन के बाल कटवा सकते है।